हार उसके जो चढ़े हुए हैं वो भी सोने के चढ़ाए गए हुए हैं।

खड़े हैं रात का समय है चारों तरफ अंधेरा--

अच्छी है एक दुकान लग रही है।

नीचे बहुत ही सारा वृक्ष हरे भरी पत्तियां--

जिसने सफेद रंग की कमीज पहनी हुई है।

जे एक ज्वेलर्स की दुकान है जिसमें--

यह एक बहुत ही बड़ा मैरिज पैलेस है जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है।

कटिंग कर रहा एक लड़का अपनी वेट कर रहा है वो फोन चला रहा है सामने पर्दे लगे हुए हैं और बड़ा बड़ा शीशा लगा हुआ है।

बहोत ही बड़े-बड़े वृक्ष लगे हुए हरे रंग के।

और टीचर ने भी अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है।

ये एक रेस्टोरेंट है जिसके ऊपर बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ कांत और ये सोफे बहोत ही बड़े बड़े लगाए हुए हैं।

और बच्चे डांस कर रहे हैं अकैडमी --

नदी है और वृक्ष लगे हुए हैं।

ये एक बहोत ही बड़ा बोर्ड है जिस पे हरि ओम हार्डवेयर --

गाड़ियां दुकान के बाहर पार्क करी हुई हैं और बोर्ड लगा हुआ है।

और अपना प्रैक्टिकल सभी बच्चे ध्यान से कर रहे हैं।